हेलो ये सैलून है बार्बर शॉप ।

एक मीनार है मीनार के बगल में संभवतः महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार एक अच्छी उत्कृष्ठ मूर्ति है।

ज़ू को हिंदी में चिड़ियाँ घर कहते हैं।

और अ बोहोत ही अच्छी तस्बीर है प्रकर्ति का नयाब नमूना --

अभी तो इसकी रौनक कम नजर आ रही है।

हरियाली से भरा हुआ प्रकृति का मनोरम नज़ारा।